अच्छा रहता है और एक्सरसाइज करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है और यहां पर कई सारी मशीनरियां --

फेस बाल आदि का ट्रीटमेंट करवाती है।

और साथ ही हरी भरी झाड़ियां तथा खूबसूरत जंगल है।

बहुत ही सुंदर और यहां पर साफ सफाई भी काफी अच्छी है।

शिमला एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है।

ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था यह शिमला की समृद्ध--

जिसमें कई कार्य स्थल या क्यूबलीक दिखाई दे रहे हैं।

जो कार्यगतिविधि का संकेत देते हैं।

जी_पी_यू का है जो शहर के मॉलरोड पर स्थित है यह एक ऐतिहासिक इमारत है और शिमला के प्रमुख स्थलों में से एक मानी जाती है।

सड़क ऊपर की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है जिसके किनारे एक पत्थर की दीवार--

मेज पर कई प्रकार की मछलियां रखी--

किलिश मछलियां भी दिखाई दे रही--